एक में ख फूल गोभी है। बहुत सारा बोरा में हरा हरा सब्जी है।

साइड में ए_सी पंखा भी लगा हुआ है।

अंदर में बहुत सारा आदमी है।

बिल्डिंग सफेद कलर का है।

अंदर में एक फ्रिज दिख रहा है।

यह सोना का दुकान है।

यहाँ कांच में बहुत सारा सोना का सामान रखा हुआ है।

साइड में लोहा का ग्रिल लगा हुआ है।

आगे में एक गोल जैसा लंबा खंभा दिख रहा है।

नीचे एक सिस्टम भी रखा हुआ है।

बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थल छोटा छोटा पत्थल है।

इसका गेट कांच का है।

एक दिवाल में एक फोटो भी लगाया हुआ हैं।

साइड में बहुत सारा गमला है जिसमें कुछ लगाया हुआ नहीं है।

बहुत लम्बा लम्बा पौधा भी है।

बाहर में एक आदमी हेलमेट पहने खड़ा है।

यहां बहुत सारा आदमी काम कर रहा है।

ये एक ढलाई कर रहा है बहुत सारा रोड भी है।

एक दिवाल के ऊपर में एक ए_सी भी है जो सफेद कलर का है।

बहुत सारा टेबुल और कुर्सी रखा हुआ है।

इस रूम के ऊपर में एक सफेद कलर का छोटा पंखा दीवाल में लगाया हुआ है।